और उनके ऊपर कुछ लाइट लग रही है।

और उसके नीचे एक मैट बिछा है।

जिनका कलर ऑरेंज है और पीला है।

उसके पास में एक स्कैनर भी रखा है।

यहां पे एक बोर्ड लग रहा है जिसपे सररनपुर जल लिखा हुआ है।

और टंकी के बराबर में एक लाल कलर का गेट लग रहा है।

और इनके ऊपर कुछ दो लाइट भी लग रही है।

और इसके बाहर तीन बाइक खड़ी हैं।

और यहां पे कुछ गुब्बारे भी लग रहे हैं।

और इनके ऊपर कुछ गुब्बारे लग रहे हैं।